यह मस्जिद में बहुत सारे आदमी यहाँ पर आ कर के यह मस्जिद में --

या डॉक्टर या पेर कू जाचं करके दवाई लगा रहा है। यहाँ पे --

यह पानी भी बहुत गहरी है।

यह गाड़ी को यहां पर सर्विसिंग भी किया जाता है।

यहाँ पर बहोत सारे गाड़ियां भी चलती हैं।

यह हमाय आं पर दाढ़ी बनाते है।

यहाँ पर बहोत सारी कुर्सियां भी लगे हैं।